ये तस्वीर में हमें दिखाया गया है की एक डुगर के अंदर--

ये तस्वीर में हमें एक प्रिंटर दिखाया गया है और एक लैपटॉप दिखाया गया है और दो तीन--

प्रिंटर को हाथ में हाथ से लगा रखा है।

एक हॉस्पिटल है लगती जहां पर इंसान आके अपनी दवाई लिख रहा है दवाई ले रहा है और वो डॉक--

घर बना रहा है और यहां में रंग बिरंगे टायर रखे हुए हैं और।

ये मिट्टी सब रखा हुआ है।

बस दिखाया गया है और यहां पर एक--

उसके दरवाजे के सामने फुल रखे हुए हैं।

ये एक दो दुकाने है जहां पर अलग अलग चीजें रखा हुआ है और--

और यहां में एक टेबल है और दो पुतला है जो सलवार पहन के रखा है एक।

और ये दुकान का नाम को टायर बल के नाम लिखा हुआ है।

इधर एक बैठा है और कोई बॉल मार रहा है।

यह तस्वीर एक ठो स्कूल या कॉलेज की है जहां पर एक टीचर और--

और दरवाजे भी दिखाया गया है और लाल रंग के दिखाया गया है।

और यहां में बहुत ही अच्छा से सजाया गया है।

ये तस्वीर में हमें तीन तरह के इंसान दिखाया गया है जो ये क्रीड़ रहा है।